बहुत सारे फ्रेम टंगे हुए हैं उनके बाजू में एक अलमारी रखी हुई है चॉकलेटी कलर की उसमें कुछ सामान रखा हुआ है।

सामने स्टेशनरी की शॉप दिखाई दे रही है सामने एक--

और एक सोफा टाइप्स कुछ रखा हुआ है बहुत अच्छा डेकोरेशन है लाइट का अच्छा और फूलों से सजाया हुआ है।

कोई अलग कलर का उनका फु अलग अलग है उनके अलग अलग--

पार्ट्स के अलग-अलग कलर है कई-कई पे रेड है कहीं पे ब्लैक है कहीं पे ब्राउन है।

वहां पर काम की कुछ हो रहा है बहुत सारा सामान उसके बाहर रखा हुआ है।

और पहाड़ भी दिखाई दे रहे है छोटे छोटे फत्थर रखे हुए है आजू बाजू और पेड़ दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन --

पानी दिखाई दे रहा बहोत मात्रा में पानी है आकाश बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है।

टेक्नो और वीवो का बोर्ड लगा हुआ है सामने एक इस बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये शायद मोबाइल की शॉप है वीवो और वीवो कांच का दरवाजा लगा हुआ है।

नाव का कलर ब्लू ब्लू है बहुत सारा नदी है यहां पर बहुत सारा पानी है।

एक दुकान दिखाई दे रही है वहां पर हैवेल्स लाइड कंपनी के मिक्सी रखे हुए हैं बोहोत सारे मिक्सी रखे हुए हैं।

बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है और आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत अच्छा--